चिप्स भी हेंगे शैंपूज वगैरा भी रखे हुए हेंगे। टेबल है टेबल के ऊपर रखे हुए हेंगे सामान और फ्रिज भी रखे हुए हैं किनारे साइड पर दीवाल है उसका कलर व्हाइट है। अंदर भी सामान हेंगे।

आसमान है एक रस्सी लगी हुई है किनारे के साईड पर पत्थरों के साईड पर ऊपर ऊपर की और गिट्टी पत्थर लगे हुए हेंगे छोटे-छोटे पेड़-पोधे हेंगे।

सामने की तरफ एक आदमी खड़ा है। टोपी लगाए हैगा वाईट कलर की। चीज की दुकान भी है बगल --

यहाँ पर एक टी-शर्ट यहाँ पर काफी सारे टी-शर्ट्स रखी हुई हैंगी उनके कलर रेड और बब्लैक ऑरेंज व्हाइट ब्लू ऐसे काफी सारे कलर्स हैंगे ।